और यहाँ पर लोग लाइन से खड़े हुए है जो की कुछ खरीद रहे है स्टेशन पर कुर्सियाँ भी लगाई गयी है।

यहाँ पर कैमरा ले जाना फोन ले जाना और वीडियो बनाना सख्त मना है।

इस दृश्य में हमें नदी दिख रहा है नदी में बहुत सारे लोग काम करते हुए नज़र आ रहे है और यहाँ पे चढ़ाव भी है।

इस द्रश्य में हमें एक सो रूम देखने को मिल रहा है यहाँ पर कई मोटर गाड़िया लगी हुई--

यह दूकान एक स्पोर्ट्स की दूकान है यहाँ पर बहोत सारे ट्रॉफी दिख रहे है उसके साथ-साथ यहाँ पर जर्सी पेंट जूते दिखाई दे रहे है दूकान काफी गुब्बारों से सजा हुआ है।

दृश्य में हमे एक शोरूम दिख रहा है यहाँ पर बहुत सारी कारे लगी हुई है जैसे सफ़ेद लाल आ--